और इस पर छत पर बहुत अच्छा यहां पर पैंट भी किया हुआ बहुत अच्छी डेकोरेशन भी की हुई है।

और एक मैदान में कुछ सफेद कलर का टेंट भी बना हुआ है जो देखने मे बहोत अच्छा लग रहा है।

यहां पर बहुत अच्छे डेकोरेशन की हुई है ये मकान है जो कि बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है।

इसमें कुछ पीले और नीले कलर के गुब्बारे लगे हुए हैं जो देखने में बहोत अच्छे लग रहे हैं।

ये प्लास्टिक के फूल होते हैं और यहां पर शीशे लगे हुए हैं जिस पर लाल कलर के कपड़े पर कुछ उतारा गया हुआ है।

और मैंने कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और यहां पर खाने का प्रवन भी किया हुआ है यहां पर शाम के टाइम कुछ प्रोग्राम --

यह एक श्यामा टेलर्स है जोकि बहोत ही अच्छे कपड़े सिलता है और इसके बराबर में एक बहोत ही अच्छी बहोत ही खूबसूरत एक--

यहाँ पर कुछ बसे दिखाई दे रहीं हैं जो देखने बहुत अच्छी लग रहीं हैं।

यहां पर है यहां पर की जाती है।

की जाती है यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से--

यहां पर मुझे एक बहोत अच्छा वॉल दिखाई दे रहा है नीले कलर का यहां पे टाइलें लगी हुई है टाइलें बहोत अच्छी लग रही है।

यहां पर कोई शादी का समूह चल रहा है यहां पर कुछ टेबल रखी हुई है कुछ चेयर रखी हुई है जो देखने में बहुत अच्छी लगी हुई है.

काम जोड़ा हुआ है यहां पर बर्गर पिज्जा मिलता है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

और यहां पर दरवाजे भी रखे हुए है कुर्सी कूलर भी लगे हुए जो देखने में बहोत अच्छे लग रहे।

और ये बहुत ही बड़ा ओम बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा ओम हमें दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ--

यहां पर कुछ अस्पताल में कुछ तकिए रखे हुए हैं यहां पर कुछ हरे कलर की चटाई भी दिखाई दे रही है जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है.

और यहां पर एक बोर्ड भी नजर आ रहा है जो कि एक व्हाइट कलर का बोर्ड है। उसमें कुछ लगे हुए हैं।

थैले में कुछ बूटे भी रखे हुए हैं कुछ बूटे साइड में कुछ और भी सिस्टम रखा हुआ है देखने में --

पक्के वाले पेड़ पौधे खड़े हुए है जो देखने में बहोत अच्छे लग रहे और ऊपर की ओर साइड बनाया हुआ है जो देखने में बहोत ही अच्छे लग रहा एक ठे यहां पर भी लगा हुआ है।

और यहां पर कुछ नमकीन टंगी हुई है कुछ कुरकुरे भी टंगे हुए हैं जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं--

और पहले ही पहले यहां पर फूल रखे हुए हैं यहां पर बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है यहां फिर फूलों की बनाई हुई माला --

प्याराई जाती है जिससे यहां पर यही काम रहता है इनका फूल बनाने फूल से माला बनाने का--

और यहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी के पत्ते दिखाई देते हैं कुछ ऐसे भी लगे हुए हैं जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत ही शानदार लग रहे हैं जो देखने में भी --

और यहाँ पे बोहत बड़ा गेट भी दिखाई दे रहा है और एक ब्रीज़ज़ा कार भी कड़ी है।

और यहां पे एक बोतल भी रखी हुई है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और यहां पर पंखे भी लगे हुए हैं कुछ भी--

यहां पर एक मुझे किचन दिखाई दे रहा है जिसमे एक व्यक्ति कुछ बनाने की तैयारी कर रहा है। यहां पर--

और यहां पर पानी भरने पर कुछ बर्तन रखे हुए हैं कुकर रखे हुए हैं देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बहुत अच्छा यहां पर एक सिलेंडर रखा हुआ ह--

यहां पर मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं कुछ मेरे को सफेद कलर के दिखाई दे रहे हैं जो देखने में बहुत अच्छी लग रहे हैं.

जोकि हाथी के सूट पर बैठा हुआ है जो भी खुद एक हाथी जैसा लग रहा है इसलिए मक्खी छुड़वा रहा--